कुछ सामान भी है और बाइक का हेलमेट भी है।

इसकी ऊपर से देखने से सिटीज सब कुछ दिख रहा है यहां तो धुआ भी ज्यादा है।

पीला रंग का है ये बोर्ड और वाइट कलर भी है यहां ज्यादा लोग खड़ा हुआ है और नाश्ता खा रही है।

और यहां तो कुछ सामान भी दिखा रही है यहां तो कुछ टेबल सब कुछ है और यहां--

ये तो एक दुकान है यहां तो सैनिटरी दुकान है इसपे ना --

ये तो एक मोबाइल शॉप है यहां तो तरह-तरह की मोबाइल्स मिलेगा यहां तो एक्समो--

सब घास है और वहां दूर से पेड़ पौधा ज्यादा दिख रहा है वहां एक बोर्ड भी है।

ये तो एक मंदिर का एंट्रेंस है यहां तो बाहर एक लाल रंग का बाइक हैस्कूटी है और अंदर अ --

अंम्म कुछ भगवान का मंदिर है ये यहां ओपन ओपन है अभी मंदिर--

और अ पिंक कलर भी है और पीला कलर भी है और वाइट सफेद कलर भी है।

और वहां थोड़ा चिक्स कलर चिक्स का डिजाइंस भी दिख रहा है यहां टीशर्ट्स है सब कुछ और कुछ--

और पेंस दिख रहा है और कुछ बेबी डॉल का वो म्म --

पेड़ भी है और यहां एक आदमी के हाथ में पीला रंग का कवर है और एक आदमी मोबाइल से बात करके चल रहा है और एक आदमी बाइक प बाहर जा रहा है।

ज्यादा अच्छा होता है इस तरह की ज्यादा पकड़ना भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए।

नास न म्म स्नेक्स भी है और पैकेट्स भी मिल रहा है और कुछ सामान है यहां और यहां कुछ चॉकलेट्स भी दिख रहा है।

फोटो भी है और बोर्ड भी है नेम बोर्ड भी है और उधर पेड़ पौधा भी ज्यादा दिख रहा है यहां गमले पे भी--

पौधा पौधा है और ये ये तो एक शेड जैसी दिख रहा है और वहां वो एक दूर से बिल्डिंग भी दिख रहा है यहां कुर्सी --

यहां तो ह हजारों में लोग हैं और यहां एक दूर से बिल्डिंग दिख रहा है वो तो ज्यादा बढ़िया है और उसमें ज्यादा लोग खड़े हो के--

ये तो एक लाइब्रेरी है यहां तो तरह तरह की पुस्तक दिख रहा है यहां तो तीन--

चार रैक्स दिख रहा है चार रैक्स फुल पुस्तक है इसमें तरह-तरह की किताबें है इसमें--

और पीछे दीवार दिख रहा है वहां तो दो लाइट्स दिख रहा है और ये रैक ग्रे कलर का है आयरन का रैक है ये सब और एक वुडन का रैक भी है ये--

नीट का क्क ऐसे क्लीन अच्छे दिख रहा है।

ये तो पा पांच है और पीछे दीवार पुराना दीवार दिख रहा है।

यहां तो कुछ बढ़िया बिल्डिंग दिख रहा है ये तो कुछ कॉलेज का बिल्डिंग जैसी लग रहा है यहां तो पेड़ पौधा भी ज्यादा दिख रहा है।

अं ये तो अ डेकोरेटिव का पेड़ ज्यादा है और गमले में भी पौधा ज्यादा दिख रहा है यहां तो बढ़िया बाइक क--

रुका हुआ है यहां दो लोग उस तरफ जा रही है और दूसरा बिल्डिंग भी है वो भी ज्यादा बढ़िया बिल्डिंग है।

यहां तो और अ कुछ दुकान है इसका इसपे तो कार सब कुछ है।

ये तो एक फैक्ट्री है यहां तो दो लोग काम कर रही है वुड वर्क वुड वर्क की तरह कर रही है एक आदमी ब्लू शर्ट पहना हुआ है उसके सिर पे एक कैप भी है।

अं ये तो कुछ सिलेंडर सब कुछ ऐसा था दिख रहा है ये सब कुछ--

ये तो एक एल_जी उँ एल_जी एल इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड है यहां--

ये तो एक मिठाई का दुकान है यहां तो तरह-तरह की मिटा का म्म मिठाई दिखा रहा है यहां तो लड्डू है।

ये तो एक चर्च का एंट्रेंस है यहां तो जीसस का स्टैचू दिख रहा है यहां तो ज्यादा लोग खड़े होके--

ये तो एक आफीस रूम है यहां तो अ कंप्यूटर्स है अं अं ये ये सब लोग--

और वहां तो कुछ सामान दिख रहा है और एक आदमी रेड कलर शर्ट पहना--

ये तो एक ऑटो है यहां ऑटो के पास दो आदमी खड़ा होकर फोटो खींच रही है एक आदमी वाइट शर्ट --

ये तो कुछ टूरिस्ट प्लेस है यहां तो ज्यादा बढ़िया बिल्डिंग है।